ये एक गैरेज है और देख सकते है बहुत ही बड़ा गैरेज है और देख सकते है कई लोग यहाँ पर काम कर रहे है और देख सकते है--

चिकन एवं फिश शॉप और देख सकते हैं कई लोग यहाँ पर चिकन खरीदने आए हुए हैं और देख सकते हो ऊपर में कई प्रकार के लाइटे है जो की बहुत ही अच्छा दिख रहा है और देख सकते हैं यह चिकन दुकान बहोत ही बड़ा है और देख सकते हैं कई लोग यहाँ पर चिकन खरीदने के लिए आए हुए हैं।

ये भी एक घर है देख सकते ये बहुत बड़ा घर है देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और साइड में छोटे-छोटे पौधे उगाए गए है और--

ये देख सकते है ये स्टेशन है और बहुत ही बड़ा स्टेशन है आप लोग देख सकते है और उधर से ट्रैन भी आ रहा है और देख सकते है इन दो पटरी है जो--

देख सकते है यहाँ पर डांस प्रोग्राम हो रहा है और सभी लोग यहाँ पर डांस कर रहे है और कई लोग यहाँ पर डांस देखने के लिए आये हुए हैं ।

कई लोग यहाँ पर काम करने आये हुए है कई लोग काम कर रहे है देख सकते है बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं सभी लोग और देख सकते है बहुत ही बड़ा घर बन रहा--